क्रॉस के सब प्लेट हैं प्लेट के साइड में कुर्सियां लगी हैं तीन लोगों के उसमें बैठे हुएं हैं।

दरवाजे पर आउट टू ऑटो पेस वेलकम यू लिखा हुआ है गेट के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और नीचे क्लियरेंस लिखा हुआ है एक आदमी उसके साथ नीचे ही बैठा है।

पिक्चर में एक मोबाइल शॉप दिखाई दे रही है मोबाइल शॉप के अंदर कई तरह के मोबाइल दिख रहे हैं।

मिट्टी ईंटियों की दीवार छोटी सी दिख रही है।

पिक्चर के अंदर एक डैम दिखाई दे रहा है।

बाहर दो लोग बैठे हैं उसके एक साइकिल दिखाई दे रही है एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

बोर्ड के साथ ही एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साथ दो पेड़ दिखाई दे रहे।

इस पिक्चर के अंदर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा--

रेस्टुरेंट में कई कुर्सियां दिखाई दे रही है कुर्सियों का रंग ब्राउन है।

साथ में एक बर्गर की पिक्चर लगी हुई है एक टेबल काउंटर है।